यह जो अ दृश्य सामने में दिया गया है ये समस्तीपुर ओवरब्रिज का है और ये ताजपुर वाली रोड है।

सामने अ तालाब दिख रहा है उस और अं काफी सुसज्जित अं अवस्था में यह तालाब है और यहाँ का जल काफी अ स्वच्छ है और बैठने के लिए --

ज अ उसका म पोस्ट भी यहाँ पे चिपकाया गया है उसके कई उत्पाद यहाँ पर हैं और --

इसमें जो अ दृश्य है ये समस्तीपुर लॉ कॉलेज अ का दृश्य है और समस्तीपुर लॉ कॉलेज आप जान सकते है की बहुत सारे अ जो विधि --